यहाँ केबिन बनी हुई है | केबिन के अंदर अ आदमी खड़ा हुआ है | छत पर दो पंखे लगे हुए हैं ।

पे रेड कलर का बॉर्डर बने हुए हैं। एक रेड कलर बोर्ड लगा हुआ हैं। आस-पास पेड़ --

सामने एक बोहोत बड़ा सा गेट बना हैं जो खम्बे ब्लू कलर में हैं।

पास में एक लड़का की अ साड़ी पहने खड़ी है उसके पास में तीन बच्चे खड़े हुए हैं |

पे पटरा बिछाया जा रहा हैं और सरिये के रॉड लगाये जा रहे हैं ।

गले मे माला पड़ा हुआ है | एक औरत प चेयर पे बैठी है | दूसरी तरफ एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है ।

अ अह फर्श कलर में हैं जो ईटे की बने समझ में आ रही है।

तीन चार आदमी खड़े हुए हैं हैं | दो आदमी ने लोहे के कुछ समान उठाया हुआ है ।

अंदर कुछ लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं। ढेर सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

में कुर्सी रखी हुई स्टेट पे दिखाई दे रही हैं। सामने रेड कलर का सोफ़ा बिच्छा है जिसपे--

दुकान में के अंदर शीशे का कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

में बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। उस पे खम्बा भी दिख रहा हैं।

अ उसपे एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है बैंक ऑफ़ इंडिया ए.टी.एम. ।

लोहे के गेट बने हुए हैं।

यह सामने एक हॉल है। उसके छत का कलर ब्लू --

दिखाई दे रहे हैं। सामने एक साइकिल खड़ी हुई है।